अ ऊं ऑफिस चेयर्स वहां पे प्रिंटर वगैरा सब दिखाई दे रहा हैं।

इस दृश्य में मुझे एक लड़का और डंबल्स और अह बॉडीबिल्डर के प्रोडक्ट्स और कमरा दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर वॉटर बॉटल --

दो सौ निन्यानवे और छे सो बासठ पानसो--

क्योंकि यहां पर चार गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में मुझे रोशनदान फ्लावर पॉट --

दो कुर्सियां और नो स्मोकिंग साइन हर एक रंग का फुट मैट एक गाड़ी नजर आ रही है।

और एस_बी_आई जनरल एस_बी_आई लाइफ इंश्योरेंस की बिल्डिंग और यहां पर--

नौ गाड़िया नजर आ रही है।